और साइड साइड में स्पीकर यह सभी रख के हैं।

यहां घर के अंदर में एक टेबुल टेबल है।

और इस नाव का ऊपर में कुछ कार्टून ये सब भी दिखाई दे रहे है।

घर के ऊपर में एक बहुत सारा कार्टून ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे आदमी लोग तीन ठो दिखाई दे रहे हैं।

इस घर का बाहर में पेड़ ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक में बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

पानी बोतल ये सब भी वो टेबल में रखे है।

उसका सामने में एक व्हाइट बोर्ड वहां पे कुछ लिख के दिखाई दे रही है।

इस घर का बाहर में बहोत सारा पेड़ ये सब भी लगाके दिखाई दे रहे हैं।

चेयर टेबुल ये सब भी अंदर में दिखाई दे रहे हैं।

इस घर का अंदर में लाइट ये सभी जला के रखा हुआ है।

पीछे में कुछ क्यूँ_आर कोड ये सब भी है और बॉटल ये सब भी रखा हुआ है।

अलग अलग प्रकार का लाइट जला के रखा हुआ है।

के साइड में बहुत सारा फूल जैसा भी लगा रहा के रखा हुआ है।

यहां एक कमरा में बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

दूर दूर में पेड़ यह सब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक कमरा के अंदर में वार्निंग बॉक्स कैसे बना के रखा हुआ है।

और तीन ठो कुर्सी भी दिख रही है।

यह एक नदी है इस नदी को अंदर में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।